सामने दीवार पर एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

दुकान में बिजली की तार बल्ब प्लग और उपकरण दिखाई दे रहे हैं।

फर्श लकड़ी का बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य एक जिम का दिखाई दे रहा है।

यह एक गुरुद्वारे का दृश्य नजर आ रहा है।